अलमारी ब्राउन कलर और व्हाइट कलर की है पास मे दीवार है दीवार व्हाइट कलर की है निचे टाइल्स लगि हुई है व्हाइट कलर की।

सामने एक गोडाउन है उसके बाहर सड़क है कुछ खंबे लगे हुए है।

यह एक शादी का मंडप है। जोकी सजा हुवा है कुछ फूलों से और उपर एक ऐ_सी लगा हुवा है उपर छत पे पी_ओ_पी किया हुवा है।

उपर लाइट्स लगि हुई है छत व्हाइट और ग्रीन कलर की हे निचे कार्पेट बिछे हुवे है रेड और ग्रीन कलर के।

कुछ किताबे रखी हुई है कुछ लक्ष्मीजी की किताबे रखी हुई है रेड कलर की कुछ सामान रखा हुआ है।

आदमियों के पास में एक चैनल गेट है और एक डस्टबिन रखा हुआ है एक साइकिल रखी हुई है।